चीजें मिलते है जैसे कि फूल हो या बहोत प्रकार के यहां फूल मिल जाते हैं।

अनेक प्रकार के पानी के जहाज यहां आते हैं और यहां से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है।

यहाँ से सामान को भारत में लाया भी जाता है और भारत का सामान दूसरे देश में ले जाया भी जा --

और इसे जयमाल में भी इस्तेमाल करते हैं लोग शादी में इसे किराये पे ले जाते हैं ।